यह कोई फूल की मार्केट है जहाँ पे बोहत रंग बिरंगा फुल यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ।

ग्रेप्स है और यहाँ पे बहुत सारे चीज है और यहाँ पे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पत्ते भी यहाँ पे लटकाई गई है यहाँ पे बहुत सारे जार है और यह फ्लोर का कलर यहां पे वाइट है।

अ एक प्लेट पे और यहाँ पर झूरे रखा हुआ है यहाँ पे एक औरत खरी है जो यहाँ पे पीले रंग की सूट पहना हैं और बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे मछली बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं ।

ये कोई शॉपिंग मॉल दिखाई दे रही है जहाँ पे बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे है और यहाँ पे बच्चेयो के कपड़े बड़े के कपरेकपड़े बहुत कुछ है यहाँ पे हैंगर में कपड़े टांगे हुए हैं अ--